टेंट हाउस है यहाँ और ये गाड़ी है। इधर बाइक खड़ी है यहाँ से रास्ता जा रही है और ये एक साइकिल पर लड़का बैठा हुआ है और इधर भी बैठा है और यहाँ पर कुछ लोग हैं और ये बाइक खड़ी है। इधर भी गेट है।